ये शायद कहीं का दफ्तर वगैरह होगा हो सकता है।

एक वाइट कलर के गंजी पेहेने हुए है एक ब्लैक कलर के गंजी पेहेन के मोबाइल देख रहे है।

कुछ सीट है कुछ सीट पवा कुछ लोग बैठे हुए हैं ग्रीन रंग का सीट है।

और पे पौधा है बिल्डिंग है कुछ प्लांट्स है वाइट कलर का गमला लगा हुआ है।